बहुत बड़ी रोड बनी हुई है इस रोड पर दो रिक्सा दिखाई दे रहें हैं और रिक्सा के आगे --

बड़े-बड़े गेट लगाऐ गए हुए हैं इस गेट के थ्रू एक रास्ता उ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इस रास्ते के आगे बहुत बड़ी बिल्डिंगें हैं।

गार्डन बनाए गए है इस गार्डन में नीचे फुटपाथ बनया गया है इस फूटपाथ के अगल-बगल छोटे-छोटे गमले और पौधे लगाए गए हैं।

लेफ्ट साइड में दो स्कूल व्हीकल दिखाई दे रहे हैं और सामने बस येल्लो कलर की है पीछे वैन है।

टूल्स रखे गए हैं जहाँ पर लोग आते हैं और अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करते हैं।

यहाँ पर बहुत बड़ा स्कूल बनया गया है ये स्कूल व्हाइट और चॉक्लेट कलर में बनाया गया है।

देखने पर काफी बढ़िया मौसम हो रखा है।

ये रात का मौसम है यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया लाइट लगाई गई है।

शोल की सीलिंग पर व्हाइट कलर का पेंट और लाइट लगायी गयी है।

यहाँ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ है।